और प्लांट्स में बहुत सारा टॉवर दिख रहा हैं एकठो बहुत सारा तार हैं।

उनके बगल में एक सीढी भी लगी हुई है।

घर के गार्डन में एक कार खड़ी हुई है।

और एक आदमी खड़े हैं इधर।

खिड़कियां हैं बोर्ड है।

और यहां पे मट्टी भी है नीचे में घास है।

और यहां पे बहुत सारे लाइटें लगी हुई है।

बहुत ही ऊंचा पहाड़ है उसमें से झरना बह रहा है नीचे।

जो कि सेल्फी ले रहे हैं और कुछ व्यक्ति नदी के बहोत ही किनारे खड़े हैं पेड़ के नीचे।

उसके अंदर कुछ व्यक्ति झा रहे हैं।

और साइड में बाइक भी खड़ी है।

और बीच से सड़क है सड़क पे बालू रखा हुआ है।

शर्ट है जीन्स है फ्रॉक है छोटे छोटे स्कर्ट हैं।

यहां पे इंजीनियरिंग ई सी ई ट्रिपल ई --

यह एक होटल का दृश्य है।

ये रेस्टोरेंट का दृश्य है यहां पर ब्लू कलर की लाइटें जल रही है।

टेबल पे फ्लावर्स भी रखे हुए हैं गिलास भी है टिशु भी है।

बैंच भी लगा हुआ है और साइड में कुर्सी पे लाइट भी रखी हुई है।

कुछ व्यक्ति अपना एग्जाम दे रहे हैं बैठ के पेपर है।